यह एक काफी सुंदर नजारा है सामने एक नदी जा रही है और यहां हरा भरा एक पार्क है।

जिसका नाम आयुष्मान पेट हेल्थ क्लिनिक है।

टिशु वाला रखा हुआ है साइड में से एक आदमी निकल के आ रहा है।

एक गाय काली और सफेद रंग की है कुछ गाय गोल्डन रंग की हैं।

एक आदमी अपने बच्चे को लेके खड़ा है।

आदमी लाल रंग की टीशर्ट और सफेद रंग की पैंट पहना हुआ है।

यह एक ठकरान कार एंड बाइक पॉइंट है जहां पर हर तरह की कार और बाइक को रिपेयर किया जाता है।

बहुत सारे रैकों में दवाइयां रखी हुई हैं।

यह एक कारखाना है यहां काफी सारी मशीने हैं।